forums and assignments in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
यह tutorial ubuntu linux os 1604 xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php moodle 33 और firefox वेब ब्राउजर का उपयोग करके recorded किया गया है
आप अपनी पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं हालांकि internet explorer का उपयोग न करें क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन विसंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने आपको शिक्षक के रूप में पंजीकृत किया है और आपको कम से कम एक कोर्स असाइन किया है
इसके अनुसार आपने अपने कोर्स के लिए कुछ कोर्स सामग्री अपलोड की है यदि नहीं तो कृपया इस वेबसाइट पर संबंधितmoodle ट्यूटोरियल देखें
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको अपने course में एक छात्र जोड़ना होगा
छात्र को जोड़ने का तरीका जानने के लिए कृपया users in moodle tutorial देखें मैंने अपने course में एक छात्रा priya sinha को पहले ही जोड़ लिया है
browser पर जाएँ और teacher login का उपयोग करके अपने moodle site को login करें
बाएँ navigation menu में calculus course पर click करें
याद करें कि हमने पहले कुछ course material और announcements को जोड़ा था
अब समझते हैं कि forums क्या हैं
शिक्षकों और छात्रों द्वारा विचारविमर्श के लिए और विचारों का आदानप्रदान करने के लिए forums का उपयोग किया जा सकता है
जबकि announcements शिक्षकों द्वारा ही पोस्ट की जाती हैं
शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए इन चर्चाओं का पर्यवेक्षण करते हैं कि सभी सदस्यों द्वारा दिशानिर्देशों का पालन किया गया है
add हम forum को जोड़ना सीखेंगे moodle पेज पर जाएँ
शीर्ष दाईं ओर gear icon पर click करें और फिर turn editing on पर click करें
common section के नीचे दाईं ओर add an activity or resource link पर click करें
नीचे scroll करें और activity chooser में forum चुनें
activity chooser के नीचे add button पर click करें
forum name course पेज पर forum में link के रूप में प्रदर्शित होगा
मैं interesting web resources on evolutes and involutes type करूंगी
description का उपयोग छात्रों को forum के उद्देश्य को समझाने के लिए किया जा सकता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है मैं टैक्स्ट type करूँगी
इस टैक्स्ट area के नीचे display description on course page checkbox पर click करें
अगला option forum type है default रूप से standard forum for general use चयनित है
यहाँ moodle में 5 forum प्रकार है forums के प्रकार को पढ़ने के लिए dropdown के आगे help icon पर click करें
अपनी आवश्यकता के अनुसार आप forum का प्रकार चुन सकते हैं मैं standard forum displayed in a bloglike format चुनुंगी
नीचे scroll करें और पेज के नीचे save and display button पर click करें
हम नए पेज पर we हैं यहाँ add a new topic button पर click करें
जैसा कि यहाँ दिखाया गया है मैं subject और message type करूँगी बाकी options सूचना के समान हैं
नीचे scroll करें और पेज के नीचे post to forum button पर click करें
एक सफलता message प्रदर्शित होता है
message पर ध्यान दें कि post का लेखक 30 mins के भीतर post को edit कर सकता है हालाँकि यह केवल nonteacher profiles के लिए सही है
जो शिक्षक course का moderator और निर्माता है वह किसी भी समय किसी भी post को edit और डिलीट कर सकता है
अब मैं छात्र priya sinha के रूप में login करूँगी फिर हम देख सकते हैं कि एक छात्र इस forum को कैसे देखता है
चर्चाओं को देखने के लिए resources की सूची में forum name पर click करें
एक छात्र के रूप में मैं या तो add a new topic या discuss this topic कर सकती हूँ नीचे दाईं ओर पर discuss this topic link पर click करें
फिर reply link पर click करें मैं एक टिप्पणी जोड़ूंगी जैसा कि दिखाया गया है
नीचे scroll करें और पेज के नीचे post to forum button पर click करें आप देख सकते हैं कि टिप्पणी इस thread के अंत में जोड़ दी गई है
छात्र द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी को देखने के लिए मुझे फिर से शिक्षक rebecca के रूप में login करना चाहिए
forum के name पर click करें यहां ध्यान दें हम इस चर्चा विषय के लिए i reply so far देख सकते हैं
वास्तविक message को नीचे दाईं ओर पर discuss this topic link पर क्लिक करने के बाद देखा जा सकता है
यहां split named एक और option है यदि शिक्षक को लगता है कि उत्तर एक अलग चर्चा के योग्य है तो वह चर्चा को विभाजित कर सकती है
चर्चा को विभाजित करना एक नई चर्चा बनाता है उस thread में नई चर्चा और बाद में posts एक नए चर्चा thread में let जाए जाएंगे मैं इसे वैसे ही रहने दूंगी
calculus course पर वापस जाएँ
फिर हम सीखते हैं कि assignment कैसे बनाना है
moodle में assignment ऑनलाइन जमा किया जा सकता है जो कागज बचाता है छात्रों को ऑडियो वीडियो पावरपॉइंट प्रस्तुतियों आदि जैसे मीडिया फ़ाइलों को शामिल करने में सक्षम बनाता है
browser पर वापस जाएँ
अधिक resources जोड़ने के लिए turn editing on पर क्लिक करें
basic calculus section के नीचे दाईं ओर पर add an activity or resource link पर click करें
एक नया assignment जोड़ने के लिए सूची से assignment पर doubleclick करें
मैं assignment को एक name दूंगी जैसा कि यहाँ दिखाया गया है
इसके बाद assignment का विस्तार से वर्णन करें और यह उल्लेख करें कि छात्रों को क्या सबमिट करना चाहिए
यह एक सरल स्वरूपित text editor है आप इसमें tables images आदि को शामिल कर सकते हैं
मेरे द्वारा टाइप किए गए टैक्स्ट को आप assignmentresource odt फ़ाइल से copy कर सकते हैं
यह इस tutorial के code files link में उपलब्ध है
availability section को देखने के लिए नीचे scroll करें
फिर हम वह तिथि और समय निर्दिष्ट करेंगे जिससे प्रस्तुतियाँ बनाई जा सकती हैं सुनिश्चित करें कि enable boxes checked है
आप तिथि का चयन करने के लिए calendar icon का उपयोग भी कर सकते हैं मैं इसे 25 nov 2018 के रूप में set करूंगी
फिर मैं due date को 15 dec 2018 के रूप में set करूँगी
cutoff date और remind me to grade by date का पता लगाने के लिए help icon पर click करें
यदि आवश्यक हो तो उन्हें set करें या यदि नहीं है तो disable करें मैं उन्हें disable करूंगी
always show description checkbox अनचैक करें यदि यह field इनेबल है तो छात्र allow submissions from date से पहले assignment का विवरण देख सकते है
इसके बाद submission types section है यदि आप छात्रों को online कोर्स सबमिट करने की अनुमति देना चाहते हैं या उन्हें केवल files upload करना चाहते हैं यह तय करें
मैं online text और file submissions दोनों को check करूंगी अपनी आवश्यकता के आधार पर आप एक या दोनों options चुन सकते हैं
मैं word limit enable करूंगी और यहाँ 1000 प्रविष्ट करूंगी
आप उन files की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें प्रत्येक छात्र upload कर सकता है इसके अतिरिक्त हम अधिकतम फ़ाइल आकार और प्रकार को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें हम स्वीकार करेंगे
कृपया ध्यान दें
accepted file types के आगे helpआइकन पर click करें यहाँ हम इस field द्वारा स्वीकार्य file प्रकारों के बारे में पढ़ सकते हैं
मैं यहाँ pdf docx doc type करूंगी
feedback types और submission settings में fields की समीक्षा करें आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें enable या disable कर सकते हैं
मैंने दिखाए गए अनुसार settings को चुना है
अब नीचे scroll करें और इसे विस्तृत करने के लिए grade section पर click करें
default रूप से maximum grade 100 है हम इसे वैसे ही रहने देंगे
फिर मैं grade to pass 40 प्रविष्ट करूंगी और blind marking को yes set करूँगी
यह मूल्यांकनकर्ताओं से छात्र की पहचान छिपाएगा इसलिए अब एक शिक्षक के रूप में मुझे पता नहीं है कि किस छात्र ने assignment जमा किया है
जो हमेशा मुझे grading करते समय निष्पक्ष रहने में मदद करता है
कृपया ध्यान दें
assignment के लिए कई अन्य settings हैं जिन्हें आप स्वतः देख सकते हैं
अब नीचे scroll करें और save and display button पर click करें
आप यहां assignment के बारे में कुछ आंकड़े
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
यहाँ आपके लिए एक छोटा सा नियतकार्य है
एक assignment बनाएँ जो केवल online टैक्स्ट submissions स्वीकार करता है विवरण के लिए इस ट्यूटोरियल के assignment लिंक को देखें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह tutorial विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद